जिसके सामने पानी की बोतल और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई है।

सामने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की कैरटे है।

सामने एक छत पर ब्लू कलर की राइस बल्ब लगी हुई है।

उसके बगल में कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

नीचे कारपेट बिछा हुआ है जिसका कलर रेड और ब्लू है।

इस तस्वीर में उपर होर्डिंग में तीन कार की तस्वीर लगी हुई है।

सामने होडिंग में एक कार के सामने एक आदमी खड़ा है।

रोड के किनारे एक द्वार पर होर्डिंग में गणतंत्र द्वारा लिखा हुआ है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

सामने बहुत सारे फ्रिज रखी हुई है।

दीवार पे एक फ्रेम तंगी हुई है जिसमें घोड़े की तस्वीर है।

कमरे में कुछ एल_ई_डी बल्ब जल रही है।

द्वार पर फूलों और पर्दों से डिजाइन किया हुआ है।

जिसमे से दो मे ब्लू कलर का शीशा लगा हुआ है।

ऊपर कुछ चिप्स और शैम्पू की पॉकेट टगी हुई है।

अलमारी में साबुन और बिस्किट की पैकेट रखी हुई है।

अलमारी के बगल में कुछ तार दिखाई दे रही है।

किनारे पर सीढ़ियां बनाई गई है।

होटल की खिड़कियों को घर की डिजाइन की तरह बनाया गया है और शीशा लगा हुआ है।

सामने घर के छत पर से कुछ आदमी देख रहे हैं।

यह एक पार्क है यहां पर बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं।

जिसने मैरून कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनाी है।

लड़के ने शट को हाथ तक मोड़ रखा है।

यह एक बाल काटने की सैलून है।

यह एक बैंक की तस्वीर है।

और बैठकर अपने हाथों को पहलाई हुई है।

प्लेटो के बीच में एक कटोरा है।

ऊपर दो खिड़की लगी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

ऊपर अलमारी में कुछ फोन और चार्जर भी दिखाई दे रहा है।